तथा पीछे में बोहोत सारे फूलों से इस गेट को सजाया गया है तथा पीछे बोहोत सारे लोग खड़े हैं।

एक युवक ठेले पे कुछ सामान खींचता हुआ चलता आ रहा है तथा कुछ महिलाएँ एक घर के बाहर बैठी हुई दिखाई पड़ रही है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है कि बोहोत सारी बच्चियाँ स्टेज पर बैठी है। उनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं जिनमें कुछ लोग बुजुर्ग भी है। त --

जिन में कुछ महिलाएं हैं तथा कुछ पुरुष हैं जिन में कुछ बुजुर्ग पुरुष भी हैं और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं तथा एक पुरुष ने एक बच्चे को अपने गोद में ले रखा है।